साइडो में कुछ लोग खड़े होकर उन्हें देख भी रहे हैं।

और नीचे कुछ पत्थर जैसे दिख रहें हैं।

ये एक सामने बाथरूम जैसा मतलब अलग सा दिख रहा है।

और सामने दो एक बाइक दिख रही है एक स्कूटी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जहां पर बिल्डिंग के पिलर नीले रंग के छत जो है वाइट कलर की है।

कुछ कोकट कटा हुआ है मछलियों को कुछ साबूती मच्छीया पड़ी हुई है।

डब्बे भी पड़े हुए गत्ते के--

यहां पर कुछ टेबल्स लगाई हुई हैं और ब्लैक कलर की टेबल है येलो टेबल है।

ये एक बस है जिसका नाम बांदीपुर टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है।